जो बैंगनी आशमानी और सफेद कलर का है।

और ये कुछ हरे दिख रहे हैं ऊपर आसमान है इसके चारों तरफ झाडियाँ है और ब्रिज है एकदम हरी भरी है।